यहां पर एक दुकान को दिखाया गया है जिसमें एक वाइट कलर का कभी लगा हुआ है।

बस बालगावी टू धारवाड़ के लिए जाएगी।

दुकान बहुत सा छोटा सा लग रहा है एक आदमी दुकान के सामने बैठा है।

यहां पर एक बच्ची एक पेड़ के नीचे खड़ी है ये शायद कुछ खेल रहे हैं।

यहां पर राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल के बच्चो द्वारा एक परफॉर्मेन दी जा रही है जिसमें एक बच्ची भारत माता बनी हुई है और उसके आजू बाजू बहोत सारे बच्चे बैठे हुए है और उसको हाथ जोड़ रहे है।

यहां पर कोई प्रोग्राम चल रहा है।

कुछ व्यक्ति स्टेज के ऊपर नाच रहे हैं।

ये किसी हॉस्पिटल की लाइन लग रही है।

बिल्डिंग और मौसम एकदम साफ लग रहा है।

शॉप के अन्दर हल्की हल्की धूप भी आ रही है।

यहां पर अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया का शॉप दिखाया गया है और शॉप के बाजू में स्कूटीज खड़ी हुई है।

यहां पे इयर फोन मोबाइल का चार्जर ये सब कुछ बेचा जाता है।

यहां पर चार गाय के बछड़े दिख रहे हैं जिनमें से तीन ब्राउन कलर के हैं और एक वाइट कलर का है।

यहां पे एक ओर दो तीन औरतें हैं जो की साड़ी पहने हुए हैं और भगवान की पूजा कर रही है।

यहां पर एक होटल का कमरा दिखाया गया है जिसमें एक छोटी सी एल_ई_डी भी लगी हुई है।

एक आदमी अपनी शेविंग करवाने के लिए भी बैठा हुआ है।

सामने एक स्टेज भी लगा हुआ है।

नीला पी पिला और नीला कलर का यहाँ पे डेकोरेशन हुआ हुआ है।

दुकान बहुत ही सुंदर दिख रहा है।